यह एक भारतीय स्टेट बैंक है जो की जहानाबाद में है ।

और बहुत सुन्दर दिखाई दे रहा है आकाश नीला यह जंगल बहुत दूर में फैला हुआ है यह सड़क के किनारे है ।

और बोहोत सारे लोग हेयर कटिंग करते है। ये सैलून बोहोत अच्छे देखते है। और बोहोत अच्छे है। यहां दो लोग --

सुन्दर दिखाई दे रहे हैं और एक सड़क पर एक ऑटो चल रही है ।